और सफ़ेद ही रंग की की फ्रॉग जैसे कुर्ता पेहैन रखा हैं।

एक गिलास के ऊपर दूसरा गिलास दूसरे के ऊपर तीसरा और तीसरे के ऊपर चौथा रखा दिखाई दे रहा हैं।

की स्वेटर पेहेन रखी है और गले में टाई लगा रखा है उसके बगल में एक छोटा- सा --

--सा बच्चा दिखाई दे रहा है जिसका सिर्फ मुँह दिख रहा है और पीछे की तरफ एक बोहत बड़ा सा आइना लगा दिखाई दे रहा है।

इन मशीनों के से में से एक मशीन में बोहत ज़्यादा रौशनी दिखाई दे रही है।

यह कोई जगह दिखाई दे रही है कोई पार्किंग जैसी जगह है।

जहाँ पर एक काले रंग की कार खड़ी दिखाई दे रही है और किनारे की तरफ एक पीले रंग का जनरेटर रखा दिखाई दे रहा है।

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बहुत सारी लता लगी दिखाई दे रही है नीचे की तरफ--

यह कोई नाला या पानी जैसी जगह दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक फ्लाईओवर बना दिखाई दे रहा है उसके पीछे की तरफ--

कच्ची ज़मीन दिखाई दे रही है मिटटी-मिटटी और उ-उ और किनारे-किनारे के तरफ कुछ पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे है।

यूको बैंक लिखा दिखाई दे रहा है उसके नीचे की तरफ एक चैनल गेट लगा दिख रहा है चैनल गेट काले रंग का है।

इस खिड़की के नीचे एक एक ऐसी का कंप्रेसर लगा दिखाई दे रहा है किनारे के तरफ एक--

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है इसकी दीवारे--

यह एक जगह दिखाई दे रही है जहाँ पर हँ अ खेत आदि कच्ची वाली ज़मीन है उसके पास ही घास भी दिखाई दे रही है और किनारे की तरफ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

यह कोई इमारत का टुटा हुआ जि सा दिखाई दे रहा है जो की छ पुरे पत्थर से बना हुआ दिखाई दे रहा--

ऊपर काउंटर पे बहोत सारी मछलियाँ रखी दिखाई दे रही है कुछ मछलियाँ छोटी और कुछ मछलियाँ बहोत ही बड़ी सी--

काले रंग का बहोत बड़ा-सा बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है इस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा दिखाई दे रहा है निचे के तरफ गिट्टी वाली ज़मीन दिखाई दे रही है और उसके पीछे की तरफ --

यह कोई बस अड्डा दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारी बसें खड़ी दिखाई दे रही है और कुछ फोर व्हीलर्स भी खड़ी दिखाई दे रही है जिसमें एक क --

अ सभी का रंग सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा आगे की तरफ कुछ साइकिल और मोटरसाइकिल भी खड़े दिखाई दे रही है पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा सा पेड़ है है।

यह एक बहुत बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है मन्दिर का रंग सफ़ेद लाल अ क रंग का दिखाई दे रहा है इस मंदिर के आगे के तरफ--